बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट पहनी है और एक लड़की है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा स्टेज दिखाई दे रहा है जिस पर दूल्हा और दुल्हन हैं बहुत सारे लड़कियाँ हैं और बहुत सारे लाइटिंग है।

और एक डी.जे. रखा है बहुत सारे लड़के है एक लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है।

चित्र में एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिस पर बेंचेस हैं और बहुत सारे अ लड़के-लड़कियां हैं।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है एक लड़की है जिसने येलो कलर का कुर्ता पहना है और सफेद कलर की चुनरी है।

साइड में बड़े-बड़े पेड़ है जो की हरे कलर के है।

और ऑरेंज कलर का दुपट्टा है। एक औरत है।

इस चित्र में एक बहुत पुराना अ किला दिख रहा है।